वो गार्डन है। जहाँ पे हमे ऊपर पेड़ की बहोत सारे पेड़ लगे हुए है। नीचे बहोत सारी घास हुई लगी है।

अपने तिरंगे के कलर के वो --

और येल्लो कलर का मुस और यह एक येल्लो कलर का --

और यहाँ पे बहोत सारे मुसलमान भईया बैठे हुए है।

पाँच छ भईया हैं |

और इस फोटो में बच्चे अंदर जा रहे है।

एक स्टेज रेडी हुआ है। एक ये एक हाल है शायद --

और और ऊपर व्हाइट कलर है इसमे और झूमर लटका हुआ है। झूमर भी बहुत अच्छा लग रहा है।

और यहाँ पे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी भी लगी हुई हैं सायद यहाँ पे और यह वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं मास्क लगाये हुए हैं।

और आसमान थोड़ा ब्लैक ब्लैक हैं मतलब पानी का मौसम है बारिश का मौसम है।